आस पास कुछ पथरीला एरिया दिखाई दे रहा है किनारे-किनारे जो की बिलकुल सूखा हुआ सा पेड़ दिखाई दे रहा है बहोत सारे ऊपर की तरफ आसमान दिखाई --

और यहाँ पर प्लक भी लगा हुआ --

उम साइकल्स खड़े हुए दिखाई दे रहे है इस पे एक टीशर्ट दिखाई दे रहा है जो की टंगा हुआ है यहाँ पर बॉल भी लगे दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग अंदर की तरफ दिखाई दे रहे है कुछ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे है एक लड़की बाहर की तरफ खड़ी हुई है।

किनारे - किनारे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर सफ़ेद रंग का भी कुछ टीला सा बनाया गया है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छाए हुए है।

बहोत सारे टीलेनुमा बनाए गए है यहाँ पर बहोत सारी मोमबत्तिया जल रही है पीछे की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे है सामने की तरफ बड़ा-सा गेट भी बना हुआ है ऊपर की तरफ मीनार भी बना हुआ है गुम्बद टाइप --

लाइटे जल रही है रौशनी आ रही है सफ़ेद रंग की--

जो स्टेज लगाया गया है उसको लाल और काले रंग के पटरे डाले है यहाँ पर अ कालीन बिछी हुए है सामने की तरफ लिखा हुआ है लक्ष्य इंटरनेशनल अकैडेमी --

और पीछे की तरफ दो लड़के भी खड़े हुए है यहाँ पर कुछ फ़ो --

कुछ यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी दिखाई दे रही है कुछ कुर्सियों का रंग ग्रे रंग का है कुछ पीछे की तरफ लाल रंग की कुर्सियाँ रखी दिखाई दे रही है यहाँ पर --

मुझे यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहै है सामने की तरफ मोनसून बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ हरे --

पेड़ो के कुछ पत्तो के रंग हरे कुछ पिले कुछ डार्क हरे कुछ काहि कलर के दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का--

यहाँ पर बहुत सारी स्टील की टंकिया रखी हुई है यहाँ पर राशन की बहुत सारा समान यहाँ रखे हुए है यहाँ पर बोरियां रखी हुई है उसकी दीवार दिखा--